टेबुल पे रख दिया मास्क बहुत अच्छा से डिजाइन पार के गला में हार उ हार हुर टिक्का-ऊक्का --

नीचें में फर्श आ ऊपर में सीढ़ियां जाने वाला वहां कपड़ा-ऊपरा टंगा हुआ रहता है तो वो देखता है सब कुछ करके दिख --